ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसमें बहुत ही ज्यादा सामान रखा हुआ है बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं।

हैं काफी अच्छा देखने को लग रहा हैं बहोत ही अच्छा बहोत ही सुंदर लग रहा है और--

ये एक बहुत सुंदर दुकान है जिसमें मन्नरी की दुकान है। बहुत सारा सामान यह पर रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर लाइट लगी हुई है।

और अलग अलग कपड़े यहां पर रखे गए हैं।

ये एक बहौत बड़ा बस गैरेज है जिसमें बसें धोई जाती हैं येलो कलर की है।

ये एक बहुत बड़ी जिम है जिम बहोत ही अच्छे तरीके से यहां पे सजी हुई है और बहोत सुंदर लग रही है।

और बहोत ही जादा माता जी की मूर्तियां बनी हुई हैं और--

इसके बहुत सारा समान रखा हुआ है सिक्के रखे हैं बॉल रखी हुई हैं और--

और अच्छा भी लग रहा है काफी टाट पीछे हुए हैं लोग सभी का उनका डांस देख रहे हैं।

और टेबल चेयर्स लगी हुई हैं और बहोत ही सुंदर लग रहा है टेबल --

पीछे बहुत ही बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं साथ में एक लोहे का एंगल भी रखा हुआ है।

आप लोगों का समान यहां पे ठीक करने के लिए और कुछ यहां पे भी रखा हुआ--